जो अच्छा लग रहा है गिफ्ट सेन्टर देखने में यहाँ पे काफी सारे गु टोएल टंगा हुआ है।

गेट है जो अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है बिल्डिंग बहुत बढ़िया भी है।

और यहाँ पे पांच लोग छै एक पुलिस ऑफिसर भी है ए.सी. है ए.टी.एम. है यहाँ पे गेट है काफी शीशा का गेट है काफी सारे लाइट्स लग रखे है।

ये जिम है यहाँ जिम कएने वाला सामान सब रखा हुआ है।